और ब्लैक शर्ट में भी कुछ लड़के खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ लाइटे जलती हुई दिखाई दे रही हैं।

लाइटें जलती हुई नजर आ रही है और हरी भरी हरियाली भी दिखाई दे --

जिसमें सामने व्हाइट कलर का एक हवाई जहाज खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति सीट पर बैठा हुआ नजर आ रहा है और नीले कलर की शर्ट भी पहने हुए दिखाई दे रहा है।

एक मकान पर कुछ मजदूर काम करते हुए नजर आ रहे हैं।

और एक लंबा बड़ा पुल भी दिखाई दे रहा है।

ये सैलून जैसा दर्श दिखाई दे रहा है।